देखिये ये एक घर है और ऊपर स्लेब पड़ रही है और एक व्यक्ति जो है वो मतलब उसको बराबर कर रहा है और दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है।

ये देखिये एक ट्रैक्टर जा रहा हैं और इसपे एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है और एक सामने से औरत आ रही है।

यह देखिये ये खेत मे एक बिजली पावर वाला टावर लगा हैं और ऊपर जो तार लगे हैं इसमें करंट आता है और इसको छूना नहीं चाहिए वरना करंट मार देता है।

यह देखिये यहां पे ग्राउड़ भी है बहोत बड़ा सा और यहा पे एक पेड़ भी लगा है।

टिकट कटाके जहा भी जाना होता है वो वहा पे जाते है| एक व्यक्ति यहा पे सामान लेजाते हुए दिखाई दे रहा है।